साथ ही हमें बाउंड्री वॉल दिखाई दे रही है।

सामने बहुत सी सब्जियां रखी हुई नजर आ रही हैं।

कुछ लोग बैंगन काटते नजर आ रहे हैं।

बहोत से लोग यहां दिखाई दे रहे हैं साथ ही--

सभी ने सफेद रंग की साड़ीया पहन रखी है।

उनके हाथ में मोमबत्ती दिखाई दे रही है।

एक पटरी नजर आ रही है पटरी पर गिट्टियां बिछी हुई दिखाई दे रही है।

साथ ही ऊपर एक पंखा नजर आ रहा है।

सामने हमें गुलाबी रंग की बेहद ही सुंदर फूल नजर आ रहे हैं।

नीचे हम कुछ लोगों को बैठे देख रहे हैं।

हा हम सामने एक बड़े से मैदान को देख रहे हैं।

एक कपड़े की दुकान देख रहे हैं।

और हमें पीछे कुछ बड़े गाउनस् --

साथ ही हमें कुछ बड़ी बिल्डिंगे की नजर आ रही है।

टेबल के ऊपर व्हाइट कलर कि प्लेट्स रखे हुए हैं।

यहां हम सामने एक बड़े से दुकान को देख रहे हैं।

साथ ही यहां पर हमें कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

खम्बे नजर आ रहे हैं साथी एक ब्रिज बना हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग यहां पर साड़ी पहने नजर आ रहे हैं।

हां हम सामने एक रेस्टोरेंट को देख रहे हैं।

यहां हमें बहुत से लोग नजर आ रहे हैं।

साथ ही हमें एक बड़ी सी खिड़की नजर आ रही है।

टेबल के ऊपर जार रखी गई दिखाई दे रही है।